पा रही हु इसे अच्छे तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है जैसे कि मैं दे--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने दुकान हैं जैसा की मैं देख --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ग्राउंड के अगल बगल सिडि़या लगी हैं बैठने के लिए --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक रूम हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं लगभग सारे लोग चेयर पर बैठे हुए हैं जैसा कि मैं देख --

सजा के रखे हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं सामने एक आदमी खड़ा है जिसने चेक कलरफुल टी शर्ट पहनी हुई--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक लाइट भी जल रही है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने दुकान हैं जैसा की मैं देख --

ये बुक्स की दुकान है जैसा कि मैं देख पा रही हूं सारे बुक्स अच्छे से शेल्फ में रखे हुए हैं।

ऊपर में ग्रीन कलर की सीलिंग है सीलिंग में लाइट्स और लैंप लगे हुए हैं।

जैसा की मै देख पा रही हुँ पीछे बड़े बड़े बैनर लगे हुए--

ता है जैसे ये सारी फ्रॉजेन मछलियां हैं मतलब कि ये मर चुकी हैं बर्फ में रखी हुई थीं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ कुछ लाइट्स लगे हुए हैं जैसा की मैं देख --

तार के बीच में एक स्टैचू है जो कि हाथ जोड़े खड़ा है और वो वाइट कलर का है।

स्‍कूल यूनिफार्म में है कुछ नाॅर्मल ड्रेसेस में है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये सारी रंगोली बना रही हैं।

जैसा की मैं देख पा रही यहाँ व्हाइट कलर के बडे़-बडे़ पार्सेल्स बी रखे हैं --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह दिन का समय है जैसा कि मैं दे--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक लकड़ी का पलंग है जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये पलंग अभी पूरा तैयार--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक रूम में लकड़ियां भरी हुई हैं।

टेबल हैं जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर में हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस दु--

पारियों लोगो ने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं।

पर ये ऑटो येल्लो कलर का है जैसा कि मैं देख पा रही हूं ऑटो पे एक मशीन है जो कि रेड कलर का है जैसा कि मैं --

पा रही हूं यहां सामने एक दुकान है जैसा कि मैं देख पा रही हूं उसका लेबल पर लिखा हुआ है केरला होटल वेज या नॉनवेज रेस्टो--

देखने से मालूम होता है ये सारे स्टूडेंट्स है जैसा कि मैं देख पा रही हूं सामने ए--

सारी चीजें शीशे के सॉकेस में रखी हुई है जैसा कि मैं देख पा रही हूं सॉकेस के ऊपर कुछ बॉक्‍सेस भी रखे हुए हैं ।

पा रही हूँ वो अपने फोन को यूज कर रहा है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सामने दो बिल्डिंग हैं जैसा कि मैं दे --